उधर बहुत सारा पेड़ दिख रहा है।

एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा हैं।

दीवार पेंटिंग किया हुआ पिंक कलर के दिख रहा है।

एक बड़ा सा नदी जैसा दिख रहा है।

प्लास्टिक का बोतल दिख रहा है।

एक पुरुष दिख रहा है उधर पत्थल का चट्टान दिख रहा है।

एक बिल्डिंग बन रहा है।

बालू दिख रहा है छरि दिख रहा है।

भी लगा हुआ है।

बांस भी दिख रहा है।

चुन्दरी सा दिख रहा है।

वायरिंग वाला पाइप दिख रहा है।

और दिख रहा है घास दिख रहा है।

बहुत सारा पुरुष बैठे हुए है योग कर रहे है।

बहुत सारा पानी दिख रहा है।

और दिख रहा है झरना टाइप पे गिर रहा है ।

आसमानी कलर का कुछ कपड़ा रखा हुआ है।

हरा पीला व्हाट ब्लू कलर का पेंटिंग किया हुआ है पेड़ दिख रहा है।